और यहाँ पे काफी अम सारे शीशे है और नीचे टाइल्स बैठाया हुआ है और यहाँ पे काफी सारे लाइट्स है जो कि गिनती हम लोग कर नहीं सकते हैं क्यूंकि अभी बहोत सारे अम लाइट्स हैं और साइड में अम गेट भी है।